वाहेगुरु का दरबार है और यहाँ पर स्टेज सजाई गई है और सोफे --

बुक्स रखी नज़र आ रही है बुक स्टोल लगे नज़र आ रहे हैं और यहां पर स्टेटनरी का--

घे घेरा हुआ है चारों तरफ से और --

नीचे कुछ रखे हुए सामान भी नज़र आ रहे हैं जैसे कि हरी मिर्च--

अ चाबी भी रखी हुई नजर आ रही है और ये --

और यहां पर लड़के कुछ डाँट पेलते नजर आ रहे हैं।

फ्रूट्स और ये यहां पर बोर्ड भी लगा है सिक्सटी रूपीज पीस का।

आ रहा है यहां पर सी.सी.टी.वी. भी कैमरा नजर आ रहा है लाइटें जल --

और ऊपर चर्च का सिंबल लगा हुआ है और यहां पर--

सुख चुका है और यहां पर पानी तो न के बराबर है।

जैसे कि मैं यहां देख पा रही हूँ यह एक कैफै है और यहां पर --